c ++ में inheritance के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
inheritance inheritance के प्रकार
हम यह उदाहरणों की मदद से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu os version 1110
g ++ compiler version 461
inheritance के परिचय के साथ शुरू करते हैं
जब एक object किसी अन्य की property को प्राप्त करता है तो इसे inheritance कहते हैं
यह मौजूदा class को बिना संशोधन किये पुनः प्रयोग करने की प्रक्रिया है
inheritance के प्रकार single level inheritance
multiple level inheritance
hierarchical inheritance
मल्टी लेवल inheritance और
hybrid inheritance
पहले हम base class और डिराइव्ड class के बारे में जानते हैं
base class की अपनी properties यानि विशेषतायें और functionality यानि कार्यात्मकताएं होती हैं
इसे parent class भी कहते हैं
इसमें वे समान विशेषतायें होती हैं जिन्हे सारे objects inherit यानि प्राप्त कर सकते हैं
डिराइव्ड class child class है
डिराइव्ड class base class की विशेषताओं properties और कार्यात्मकताओं functionality को inherits करता है
अब देखते हैं single level inheritance क्या होता है
single level inheritance में सिर्फ एक base class और एक डिराइव्ड class की ज़रुरत होती है
multiple inheritance
multiple inheritance में डिराइव्ड class एक से अधिक base class से inherits करता है
hierarchical inheritance
hierarchical inheritance में multiple डिराइव्ड classes एक base classes से inherit करती हैं
मल्टी लेवल inheritance
मल्टी लेवल inheritance में सबclass अन्य classes के लिए base class की तरह कार्य करती हैं
और hybrid inheritance
hybrid inheritance में inheritance की एक से अधिक form जुड़ी है
अब single level inheritance पर एक उदाहरण देखते हैं
मैंने पहले ही editor पर एक code टाइप कर लिया है
मैं इसे समझाउंगी
ध्यान दें हमारा file exam _ inherit cpp है
यह उदाहरण student का नेम roll नंबर और marks प्रदर्शित करना शामिल करता है
यह iostream हमारी header file है
यहाँ हम std namespace प्रयोग कर रहे हैं
यहाँ हमारे पास class student है
फिर हमारे पास वेरिएबल roll_no और character array नेम है
class student के प्राइवेट मेम्बर्स की तरह
function input और function display class student के public functions हैं
यहाँ हम student का नेम और roll नंबर स्वीकार करने के लिए input function प्रयोग कर रहे हैं
फिर हमारे पास नेम और roll नंबर प्रदर्शित करने के लिए display function है
यहाँ हमारे पास exam _ inherit की तरह अन्य class है
यह डिराइव्ड class है
यह class student के data और function को inherits करता है
फिर हमने sub1 sub2 sub3 और total घोषित किये
class exam _ inherit के प्राइवेट variables की तरह
यहाँ हमारे पास public functions में input _ exam और display _ exam है
यहाँ हम class exam _ inherit को बंद करते हैं
अब हम तीन स्टूडेंट्स के marks को स्वीकार करने के लिए input _ exam function प्रयोग कर रहे हैं
यहाँ तीन स्टूडेंट्स के total की गणना करने के लिए display _ exam function प्रयोग कर रहे हैं
फिर हम total print करते हैं
यह हमारा main function है
यहाँ हम class exam _ inherit का एक object ex बनाते हैं
फिर हम object ex प्रयोग करके सारे functions को कॉल करते हैं
और यह हमारा return statement है
अब program निष्पादित करते हैं
अपने keyboard पर एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal window खोलें
compile करने के लिए type करें
g ++ स्पेसexam _ inherit cpp spaceo space exam
एंटर दबाएं टाइप करें
/exam एंटर दबाएं
यहाँ प्रदर्शित होता है enter roll no:
मैं 1 एंटर करुँगी
enter name: मैं arya enter करुँगी
enter marks of subject1
मैं 60 एंटर करुँगी
subject 2 में 70
और subject 3 में 80
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है
roll no is: 1 name is: arya और
total is: 210
अब हम उसी उदाहरण में multilevel inheritance देखेंगे
मैंने पहले ही code टाइप कर लिया है
अपने editor पर वापस आते हैं
ध्यान दें हमारा file multilevel cpp है
यहाँ हमने variable total घोषित किया है
class exam _ inherit के public variable की तरह
ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइवेट members डिराइव्ड class से accessed नहीं होते हैं
यहाँ हमारे पास एक अन्य class grade है
यह class exam _ inherit को inherits करता है
class grade डिराइव्ड class है
और class exam _ inherit class grade के लिए base class है
class exam _ inherit के सारे functions और data class grade को inherit किया जायेगा
यहाँ हमने avg को class grade का प्राइवेट member घोषित किया है
और function average को public function की तरह घोषित किया है
फिर हम class बंद करते हैं
यहाँ average की गणना करने के लिए हम average function का प्रयोग करते हैं
फिर हम average print करते हैं
main function के अंदर हम class grade का object gd बनाते हैं
फिर हम object gd प्रयोग करके सारे functions कॉल करते हैं
gd input
input _ exam
display display _ exam
और average function
और यह हमारा return statement है
अब आप देख सकते हैं कि class grade डिराइव्ड class है
और exam _ inherit class grade के लिए base class है
और यहाँ class exam _ inherit डिराइव्ड class है
और class student class exam _ inherit के लिए base class है
अब program निष्पादित करते हैं
अपने terminal पर वापस आते हैं
compile करने के लिए type करें g ++ space multilevel cpp spaceo space mul
enter दबाएं type करें/mul
enter दबाएं
यहाँ हम देखते हैं: enter roll no:
मैं 2 enter करुँगी
enter name:
मैं pratham enter करुँगी
enter marks of subject1
मैं 65 एंटर करुँगी
subject2 में 67 और
subject3 में 82
output इस प्रकार प्रदर्शित होता है:
roll no is: 2
name is: pratham total is: 214 और
average is: 71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
अब अपनी slide पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा
inheritance और inheritance के प्रकार
एक नियत कार्य में एक class shape बनाने के लिए program लिखें
फिर उस class के लिए दो functions area और perimeter बनायें
फिर भिन्न shapes जैसे square rectangle और circle का area और perimeter ज्ञात करें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
अधिक जानकारी कर लिए कृपया
contact @spokentutorial org को लिखें